ऊपर इ मिटटी टिक के खड़ा दिखाई दे रहा कुछ तो पैदल चलते दिखाई दे रहे है पीछे के साइड झाड़ और पहाड़ दिखाई--

ये एक गार्डन का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके अंदर सामने झूला बना हुआ जिसके अंदर चदर का टीन शीट बनाये से पाइप लगये से कुछ पेड़ लगे दिखाई दे रहे है जिस जगह आखिर में दिख रही है सामने एक छतरी जिसके नीचे झूले बने है जिसके नीचे कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहा है।

एक मस्जिद का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके सामने खुला ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है सामने कुछ झोंपड़े बने दिखाई दे रहा है ट्रालिया रखी दिखाई दे रहा है कुछ गाय दिखाई दे रही है सामने खेती दिखाई दे रही है।

दीवार बनी दिखाई दे रहा है दीवार के पीछे मस्जिद है पीछे के साइड कुछ झाड़ दिखाई दे रहे है सूरज ढलता हुआ दिखाई दे रहा है आस पास कुछ गाँव वाले दिखाई दे रहे है मस्जिद के ऊपर मरहम दिखाई दे रहा है।

चद्दर की बनी दिख रही हे कुछ लोग पेदल चलते रोड पे दिखाई दे रहा है सामने एक घर दिखाई दे रहा हे पेड़ के साम- पीछे--

ये किसी ऑफिस के बाहर का फोटो दिखाई दे रहा है जिसका सामने गेट के बाहर बाइके खड़ी दिखाई दे रही हैं। कुछ एक सामने कार खड़ी दिखाई दे रही है पीछे एक जालियां लगी दिखाई दे रही है बिल्डिंग तीन--

किसी गोदाम के अंदर का फोटो दिख रहा है बैकरी के अंदर का फोटो दिखा रहा है इसमें लकड़ी के टेबल बने दिख रही है उसके ऊपर लोहे के कुछ मशीनें पड़ी हुई लगी हुई दिखाई दे रही है।